यह फोटो में आप देख सकते है की ये बहुत बड़ा मैदान नज़र आ रहा है मैदान में कई व्यक्ति दिखाई दे रहे है झंडे नज़र आ रहे मैदान के किनारे किनारे सीढ़िया भी नज़र आ रही बैठने के लिए--

इस फोटो में आप देख सकते है की एक सफ़ेद रंग का एक बड़ा भवन दिखाई दे रहा है भवन के आगे कई पेड़ दिखाई दे रहे है खम्बे नज़र आ रहे है तथा कई सारी बाइके नज़र आ रही है।

एक रोड टाइप की दी दिखाई दे रही है भूमि तथा ये उसके अगल - बगल काफी पानी भरा हुआ है तथा सामने की ओर एक मैदान भी दिखाई दे रहा है गुलाबी तरह का --

इस फोटो के अंदर एक भवन हैं भवन में दिवारों पर कई --

कूड़े की बल्टी दिखाई दे रही है तथा शोरूम के अंदर का गेट --

तथा मंदिर दिखाई दे रहा है ऊपर की लाइट नजर आ रही है सामने भी छोटा सा मेज दिखाई दे रहा है जिस पर काफी कपड़े रखे है सामने की ओर रैकर दिखाई दे रहा है।

तोड़ रहै है आगे की ओर एक द--

यहाँ काफी भव्य सूंदर लग रहा है उस के नीचे द्वार पे काफी लोग खड़े हो रखे है।

किनारे - किनारे बड़े - बड़े खभे दिखाई दे रहे है लाइट के --

तथ उसके बिच- बिच स्टील के हैंगर भी लगा रखे है सामने मेज दिखाई दे रहै है बड़े -बड़े --

सामने आपको भूषा दिखाई दे रहा बिखरा हुआ--

इसके बगल बेस की बाउंड्री है जो की काली और सफ़ेद रंग की है उसके ऊपर लोहे भी लगा रखे हैं ।

उनके पीछे एक बहुत बड़ा भवन दिखाई दे रहा था बगल में एक लठ बहोत बड़ी नज़र आ रही है।